लड़के के पास काफी सारा सामान नजर आ रहा है। यहाँ पर काफी सारी मशीनें रखी गई हैं। यहाँ काफी सारी बैनर प्रिंटिंग की मशीनें दिखाई दे रही हैं।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

आ रही है बिल्डिंग काफी बड़ी दिखायी दे रही है। बिल्डिंग के बाहर कुछ गेट दिखायी दे रहा है। गेट काफी बड़ा नजर आ रहा है। बिल्डिंग के अन्दर कुछ लोग दिखायी दे रहे हैं।

पेड़ काफी बड़े दिखाई दे रहे। यहाँ पे काफी सारे पेड़ हरे भरे नजर आ रहे। यहाँ पे कुछ पौधे नजर आ रहे --